ये चित्र मा हम ते एक बड़ी जगह दिखेण लगीं जफणा हम ते बहोत सारा लोग दिखेण लग्यां उंडे बिटि हम ते कुछ खम्बा अर कुछ लाल लाल अर नीला कलर का वफणा दिखेण लग्यां कुछ दुकान नीसाण दिखेण लगीं।

जू पर कुछ रंग छन यु कन लग्या ऊ थे काटन छण लग्या ये फणी कुछ गोंद टेप भिन दिखेण लग्या दिखेण सी लगदु यु कुछ बणोंन छन लग्या पैथर बटे हमथे ग्रिल छ दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम त तीन चार नौनी दिखेण लगीं जून सफ़ेद साड़ी छन पहनी युंका गाला उन्द हम त माला दिखेण लगीं जै पर क्रॉस च बणयु।

ये चित्र मा हम त बड़ी जगह दिखेण लगीं जगदा हम त बहोत लोग दिखेण लग्यां कुछ दुकानि दिखेण लगीं वैका भैर कुछ बोर्ड लग्यां पोस्टर

ये चित्र मा हम ते एक कमरा दिखेण लग्युं जु दिखेण से एक स्कूल कु कमरा छ लगण लग्युं जगदी हम ते बहोत सारी नौनी दिखेण लगीं नौनियाल दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमते एक नौनियाल दिखेण लग्युं जू अपड़ी सेल्फी छ खिचण लग्युँ उंडे फंडे हमते भौत सारी बेरवान दिखेण लगीं जू नई साड़ी च पैनी अर ऊंका नाक बटि लीके --

यफणा ऊंका हाथम हमते कुछ कागज कुछ कॉर्डन दिखेण लग्याँ कुछ गोँद का पैकेट कड़ा वफण हमते कुछ कैंची धागा भी दिखेण लग्यां फंडे बटी हमते एक बैरवान दिखेण लगीं जीन सफ़ेद साड़ी पैनी।